इसमे बोहोत सारे लोग हैं । इसमे लाल बैग है और छोटे-छोटे पौधे हैं ।

ढ़ेर सारे लोग हैं और छोटे-छोटे बोहोत सारे कार्टून है और इसमें जाली भी है ।

ये एक दुकान है जिसमें ढेर सारे लोग हैं और वाइट कलर के चेयर्स हैं ।

ये एक स्टेज है जिसमें बोहोत सारे लोग हैं उसके पीछे पोस्टर्स हैं जिसमें भगवान हैं ।

और तराजू है और आदमी है।

इसमें एक टावर है जिसमें उम बहोत सारी खिड़की हैं और दो घड़ी हैं ।

कुछ सीढ़ियां है एक गाड़ी है एक आदमी है और पेड़-पौधे है और बादल है।

फटी जाली है और कुछ बाइक्स भी हैं और इसमें रेड कलर की कुछ मशीनें हैं और पाइप है। ब्लू कलर का मशीन है।

ये एक सिटी हैं इसमें ढ़ेरों सारे बड़े-बड़े गाड़ियाँ हैं।